पिक्चर है एक बस स्टैंड का पिक्चर है जहाँ पे बहोत सारे बस भी यहाँ पे खड़ा हुआ है| यहाँ पे साइड मे बहोत सारे बस यहाँ पे खड़े हुए हैं| कलरफूल बसेस हैं।